और इस से ये प्रतीत होता है की गया में भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज है और काफी विकास यहाँ पे भी हुआ है काफी बेहतरीन यहाँ पे रास्ता है।